फूल है पर्दे हैं दो खंबे हैं ।

मेट है पर्दे हैं लाइट है लोग हैं कुर्सी हैं ।

बैनर है कुर्सियां है मसीने हैं बैग्स है लोग हैं वैटस् है।

तार है कुर्सी है लोग हैं।